एक लड़का है ओ सामने खड़ा है उसके अलावा कुछ --

लकड़ी का बना हुआ है जिसमे पौधे लगे हुए है उसके अलावा --

कलिका माता गणेश जी और मूर कलिका माता के हाथ में त्रिशूल है।

महिलाये है जो खडी है उसके अलावा एक व्यक्ति है जिसने काले कलर की टी-शर्ट और काला कलर का चड्डा और चप्पल पहन र --

पास में एक बिल्डिंग है जो सफ़ेद कलर की है और उसमें डिज़ाइन करी हुई है नीले कलर से पास --

तीनों ने पीली कलर की टी-शर्ट सफ़ेद और हरी कलर की मिक्स टी-शर्ट पहन रखी है।

जो सफ़ेद कलर की है पीछे फ़ोन पे का स्कैनर लगा हुआ है साइड में --

कलर की है और गेंदे के फूल है जिसमे और पीले कलर के फूल है ।

उम्म मालाएं लगी हुई है हरी सफेद और लाल कलर --

और इसके इलावा एक बोर्ड लगा हुआ है जो पीले कलर --

और बॉक्स रखे हुए हैं तीन आदमी खड़े हुए हैं जिस --

जो क्रीम कलर का और ब्लू कलर का है खुला आसमान है ऊपर ।